user roles in moodle पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे कि user को admin role असाइन कैसे करें
teacher को course असाइन कैसे करें और student को course में enrol कैसे करें
यह tutorial ubuntu linux os 1604
xampp 5630 के माध्यम से प्राप्त apache mariadb और php
आप अपनी पसंद के किसी भी web browser का उपयोग कर सकते हैं
इस tutorial के शिक्षार्थियों के पास अपनी moodle website पर बनाए गए कुछ courses होने चाहिए
यदि नहीं तो कृपया इस website पर पिछला moodle tutorials देखें
browser पर जाएँ और अपने admin username और password का उपयोग करके अपने moodle website पर login करें
अब हम admin dashboard में हैं
course and category management पेज पर जाएँ
सुनिश्चित करें कि ये courses आपके moodle interface पर हैं यदि नहीं तो उन्हें बनाने के लिए ट्यूटोरियल रोकें और फिर से शुरू करें
अपने द्वारा बनाए गए सभी users देखें
site administration पर click करें
फिर users टैब पर click करें
accounts section में browse list of users पर click करें
अब हमारे पास 4 users हैं
अब user priya sinha पर click करें और उसकी profile को edit करें
अत: user details section में edit profile link पर click करें
नीचे scroll करें और optional section पर जाएँ इसके विस्तार के लिए इस पर क्लिक करें
ध्यान दें कि fields institution department phone और address उपस्थित है ये वे हैं जिन्हें हमने csv file में प्रविष्ट किया
users सूची पर फिर से वापस जाएँ
अब इस यूजर system admin2को administrator role असाइन करें
बाएँ menu पर site administration और फिर users टैब पर click करें
permissions section के लिए नीचे scroll करें और site administrators पर click करें
यहाँ users के 2 set हैं पहले set में वर्तमान site administrators के नाम हैं और दूसरे set में अन्य सभी users की सूची है
दो सूचियों के बीच में विभिन्न कार्य करने के लिए buttons हैं
users box से system admin2 user पर click करें
यदि बहुत अधिक यूजर्स हैं तो search करने के लिए users box के नीचे search box का उपयोग करें और फिर add box पर क्लिक करें
confirm box में continue button पर click करें
यहाँ अभी 2 admin users हैं हमारे पास जितने चाहे उतने admin users हो सकते हैं
हालाँकि केवल एक main administrator हो सकता है main administrator को सिस्टम से कभी डिलीट नहीं किया जा सकता है
अब हम calculus course के लिए teacher के रूप में rebecca raymond असाइन करते हैं
ऐसा करने के लिए course and category management पेज पर जाएँ जैसे कि यहाँ दिखाया गया है
इसके अंतर्गत courses देखने के लिए 1st year maths subcategory पर click करें
calculus course पर click करें course के विवरण को देखने के लिए नीचे scroll करें enrolled users पर click करें
हम देख सकते हैं कि यूजर priya sinha इस course के लिए नामांकित enrolled है
हमने इसे upload user csv के माध्यम से किया
moodle में teacher सहित सभी को इस course में नामांकन करने की आवश्यकता है
उन्हें सौंपा जाने वाला नया role course में उनके वर्तमान role पर निर्भर करता है
ऊपर दाईं ओर या नीचे दाईं ओर enrol users button पर click करें
popअप window खुलता है
इसमें assign roles के लिए ड्रॉपडाउन है enrolment options के लिए fields है औऱ search button है
हम उन सभी यूजर्स की सूची देख सकते हैं जिनको वर्तमान में यह course असाइन नहीं किया गया है
assign roles ड्रॉपडाउन में teacher चुनें
फिर rebecca raymond के आगे enrol button पर click करें
अंत में पेज के नीचे finish enrolling users button पर click करें
students को समान तरीके से इस course के लिए असाइन किया जा सकता है
उसके teacher role से rebecca raymond को unअसाइन करने के लिए roles column में trash icon पर click करें
confirm role change popup box में remove button पर click करें
यहां पहले से ही नामांकित यूजर्स को role असाइन करने के लिए assign role icon का उपयोग किया जा सकता है
सभी role नामों के साथ एक छोटी सी popअप window खोलने के लिए उस पर click करें
rebecca raymond को teacher role असाइन करने के लिए teacher पर click करें बॉक्स अपने आप बंद हो जाता है
दाईं ओर स्थित trash icon पर क्लिक करके यूजर्स का course से नामांकन वापस ले सकते हैं
दाईं ओर का gear icon user enrolment विवरण को एडिट करने के लिए है इस पर क्लिक करें
यहाँ यूजर को निलंबित करने और enrolment start और end dates को बदलने का विकल्प है
enrolment पेज पर वापस जाने के लिए cancel button पर click करें
इसी के साथ हम tutorial के अंत में पहुँचते हैं संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा: user को admin role असाइन करना course के लिए teacher असाइन करना और कोर्स में student नामांकित करना
नियतकार्य के रूप में
linear algebra course के लिए student के रूप में priya sinha असाइन करें
निम्नलिखित link पर मौजूद video spoken tutorial project को सारांशित करता है कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें
spoken tutorial team कार्यशालाएँ आयोजित करती है और प्रमाणपत्र देती है अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें
कृपया इस forum में समय के साथ अपने प्रश्नों को post करें
spoken tutorial project nmeict mhrd भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है इस mission पर अधिक जानकारी दिखाई गई link पर उपलब्ध है
यह script विकास द्वारा अनुवादित है मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुडने के लिए धन्यवाद